यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है। जो एक मंदिर के अंदर की है। यहा पर एक मूर्ति रखी हुई है। जिसके ऊपर घंटी टंग रही है।

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक नर्सरी की है।